ये एक मेला है जिसमें बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे--

दिल्ली में बहुत लोग आए हुए हैं इसमें बहुत सारे लाइट चल रही है बहुत सजा है बहुत से लोग है जो खेल रहे हैं।

बैठे हुए हैं बहुत से लोग जो आपन अपना फोन चला रहे हैं कुर्सी में सब बैठे हुए हैं अंदर एक।

जल रहा है बहुत सारी लाइट्स जली हुई है बहुत से लोग--

बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं लाल लाल करके सिग्नल दिए गए हैं और पोल है और बहुत सारे--

और बहुत अच्छे से सजाया गया है बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा डिम डिम लाइट्स --

और पानी में पहाड़ों की छवि दिख रही है बहुत सारे पत्थर है पत्ते सब चुअअ सुख के नीचे गिरे हुए हैं।

यहां पे बहुत अच्छे से इसको कलर किया ग्रे और येलो में--

इसमें बोहोत सारे डिजाइंस बनाए गए हैं और दोनों साइड पे गणेश जी की फोटो --

बोहोत से जॉइंट बाहर निकली हुई है केबल के तार लगे हुए हैं।

बहुत सारी दुकान छोटे-छोटे कंटेनर बनाए बहुत सारे खाने पीने के सामांस रखे गए हैं स्नेक है।

ये एक बर्थ बर्थडे का डेकोरेशन किया गया जहां पे बहुत अच्छे से सजाया गया सेलिब्रेट --

बहुत सारे लाइट्स से माइक लगे मंच पे दो आदमी बैठे हुए हैं दो आदमी आपस में बात करें बहुत से लोग हैं जो --

एक होटल न्यू न्यू होटल ओपन हुआ है जिसका नाम है राधा कृष्णा।

और अच्छा से पानी एक लाइन से फव्वारे की तो तरह निकल रहे हैं बहुत सारा पानी--

ये दिखा रहे हैं सैंपल की तरह से बहुत अच्छे डिजाइन के छोटे-छोटे मंजिल है।

ये बहुत बड़ा सा ग्राउंड है जहां पे छोटे-छोटे कैंप लगाए गए हैं।

रंग-बिरंगे कैंप लगाए गए हैं बीच में फायर ब्रिकेट लगाए गए फायर केरने के लिए और बड़े-बड़े पेड़ पौधे जंगलों के बीच --

ये एक चर्च है जहां पे बहो एक क्री अ क्रिसमस का ईशा मसीह का फोटो लगे म्म लगा हुआ है स्टेचू ।

बहुत सारी फोटोस लगी हुई है साइड साइड में छोटे-छोटे घर रूम बने हुए ईशा मशीष के सामान रखी हुए डायरी रखी हुई है।

ये एक कैबिन है जहां पे साई बाबा की मूर्ति रखी हुई उनको फूलो से सजाया गया है।

जहां पे एक कुर्सी रखा हुआ है और उसके टेबल पर बहोत सामान रखी एक टेबल पर झोला रखा गया है साथ में कुछ सामान रखे गए स्वीट्स है।

ये एक झरना है जहां पे पानी गिर रहा है आप--

का कलर हल्का ग्रीन वाइट में दो आदमी है।

ये एक रेस्टोरेंट है जहां पे बहुत सारे सीशेस लगाए गए हुए हैं।

यह एक स्कूल का समारोह है जहां पे--

और काम भी हो रहा है बहोत सारे लोग आना जाना कर रहे हैं बाइक से आना जाना करे पैदल आना जाना करे बाइक से बसेस आ रही है।

और सुनसान रास्ता लैंप है पेड़ पौधे है बोहोत सारे--

अब बहुत से टल्स ऐसे भी खोल के रखे गए हैं।

वो तीन आदमी है जो आना जाना चेकिंग कर रहे हैं मोटर रखा हुआ है बड़ा वा--

पंख लगाए गए हैं बहुत से छोटे-छोटे कंपार्टमेंट बनाए गए जहां पे सब लोग बैठ के अपना काम पढ़ाई कर रहे हैं।

बीच में एक झंडा लगा हुआ है बहुत सब धोने की तैयारियां कर रहे हैं।